बादल दिखाई दे रही है जो लाल कलर के भी दिखाई दे रहे है और कुछ सफेद कलर के दिखाई दे रहे है और हमे पानी दिखाई दे रहा है जो की हरा और लाल कलर का दिखाई दे रहा है पेड़ भी दिखाई दे रहे है जो दिखने में सुंदर लग रहे हैं।